ये पूरा अथि है बनाया गया है जोकि बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे खूबसूरत है बहुत प्यारा है सब कुछ और पूरा मन्दिर बनाया गया है जोकि बहुत अच्छा लग रहा है ।

और लाइट - उट का व्यवस्था भी है सब कुछ ठीक-ठाक है बहुत सुंदर लग रहा है खूबसूरत है बहुत सुंदर है सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ का ।

ये दोनों अथी है लो जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और दो लोग हैं जो पानी में खड़े होके नाई है दो ।

ये नल है जो की नल से लग रहा है पानी अथी बना रहा है उ अच्छा लग रहा है देखने में सब सुंदर है सब कुछ ठीक-ठाक है अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है।